यहाँ सामने आपको दिख रहा होगा इस इमेज में शांति सुपर मार्केट है जिसमें हर चीज़ अवेलेबल है जैसे मेकअप की सारी चीजें लिपस्टिक और वगेरा- वगेरा बहुत साड़ी चीज़ें अवेले --

साथ में वाटरपार्क टाइप का है इसमें बच्चे झूल रहे हैं।

और यहाँ पे कुछ सफाईयाँ चल रही है सफाई कर रहे है ग्रुप -ग्रुप के लोग बटे हुए हैं।